कार्तिक भी हैं शेर राक्षस को खा रहा है सामने बच्चे बैठे हुए है कुछ लेडीज माता रानी की झांकी को देख--

मुकुट लगा रखा है अम चार बच्चे बैठे हुए जिन्होने हात मे झंडा ले रखा है एक बच्चे ने चुनरी ओढ़ रखी है।